मुझे इस फोटो में एक लड़का दिख रहा है।

मुझे इस फोटो में ब्लू कलर दिख रहा है।

मुझे इस फोटो में ग्रे कलर दिख रहा है।

मुझे इस फोटो में जमीन दिख रही है।

मुझे इस फोटो में होलसेल बुक सेलर दिख रहा है।

मुझे इस फोटो में एक्टिव लिखा दिख रहा है।

मुझे इस फोटो मे दो बाइक दिख रही है।

मुझे इस फोटो में नीला कलर दिख रहा--

मुझे इस फोटो में एक लड़का दिख रहा हैं।

मुझे इस फोटो में दिख रहा--

पेड़ दिख रहा है मुझे इस फोटो में इंसान भी दिख रहे--

मुझे इस फोटो में एक लड़की दिख रही है।

मुझे इस फोटो में एक लाइट दिख रही है।

मुझे इस फोटो मैं ऑफिस दिख रहा हैं।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

और एक खाने की थाली दिख रही हैं।

मुझे इस फोटो में पेड़ दिख रहे हैं।

मुझे इस फोटो में रोड का हाईवे बनता हुआ नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में टेबल दिख रही है।

मुझे इस फोटो में आरती बुक सेंटर लिखा हुआ है वह दिख रहा है।

मुझे इस फोटो में उस गार्डन के अंदर एक बोर्ड --

मुझे इस फोटो में कार दिख रही है।

मुझे इस फोटो में एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ--

मुझे इस फोटो में रज वाड़ी लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे इस फोटो में--

एच_पी जी ए एस एच_पी गैस सिलेंडर वाला लिखा हुआ दिख रहा है।